एक मंदिर के अंदर --

इस चितर में देख सकते हैं एक दुकान जिसका नाम कॉटन हाउस --

इस चित्र में देख सकते है।

एक सब्जी की दुकान जिसके पास में और भी दुकाने हैं।

इस चित्र में देख सकते हैं एक सुपर मार्केट दिखाई --

इस चित्र में देख सकते हैं।

एक सब्जी मंडी जिसके पीछे एक मस्जिद दिखाई दे रहा है।

जिसका नाम एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज है |